और बेहद ही अच्छे से डेकोरेशन किए गए हैं जो बहुत ही भीड़ भी देखने को मिल रहे है यहाँ पे।

कोई एक पार्क का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिले जो बेहद ही खूबसुरत नज़ारा देखने को मिल रहे है पार्क का।

और नदियो में शायद विर्सजन करेंगे मूर्ति को--

और बहुत सारे ग्राहक लोग जो आ रहै हैं फल लेने के लिए --